एक सड़क है सड़क के साइड में बहोत सारी दुकानें है जो फल सब्जी की दुकाने है सामने टोकरी रखी हुई है इसमें बैंगन आलू प्याज टमाटर इत्यादि रखे हुए सामने फील लगा हुआ है और एक लाइट जल रहा है।

यह एक मंदिर हैं जो स्टोन के ऊपर बना हुआ हैं इसका कलर गेरुआ कलर हैं सामने की तरफ--

एक कच्ची सड़क है ऊपर की तरफ इसमें आसमान नज़र आ रहा है।

एक सब्जी मार्केट है। सामने इसमे एक चबूतरा बना हुआ है उसके ऊपर बहोत सारे कैरेटे जमी हुई है ।साइड मैं भी इसके बोहोत सारे पिलर्स ( नजर आ रहे है। ऊपर टीन शैड डला हुआ है।

एक वॉटर पार्क है जिसमें जमीन पर पानी हे कुछ ग्रीन कलर की ग्रासेस लगी हुई हैं सामने से स्लाइट नजर आ रही है बैकग्राउंड में पेड़ लगे हुए है जिनकी पत्तियां ग्रीन कलर --

लोहे की चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई है सामने बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो ग्रीन कलर की पत्तियां है एक पाइप लगा हुआ है।

सड़क है जो सामने की तरफ जा रहीं है साइड में बहोत सारे झा घर है कुछ झाड़ है जमीन पर ग्रीन ग्रासेस लगी हुई है मट्टियाँ पड़ी हुई है।